अ यह अशोक चक्र लगा हुआ है।

गेट के अंदर जाली है लोखंड की ग्राउंड है।

शादी का डेकोरेशन किया हुआ है बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं।

साड़ी की दुकान है बहुत सारी साड़ी है।

बोट है बोट के अंदर सवारी कर रहे है बोटिंग कर रहे हैं पीछे की तरफ पहाड़ दिख रहे है और बो नदी में बहोत सारा पानी है।

बड़ा सा मंदिर है मंदिर के आगे गणपति जी की मूर्ति है अच्छा सा मंदिर है पब्लिक दर्शन की लाइन में खड़े हुए हैं।

फ्लावर्स है गार्डन है गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स है।